डिजाइन बनाया गया है और ऊपर करकट दिखाई दे रही है इधर।

दो बड़े बड़े खिड़की हैं और इधर तीन सीढ़ियां हैं।

जमीन भी ब्राउन कलर की हैं यहाॅं पे मेकअप करने की लिए काफ़ी ज्यादाही अच्छा हैं।

यहां पे घर बनाने वाले मिस्त्री को दिखाया गया है जिसमें कि घर बनने के बाद--

रे रेड कलर की टी_शर्ट पहनी हुई और इधर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने की--

घर है इधर कारे भी लगी हुई है और ए_सी भी दिखाई दे रही--

टेबल के ऊपर एक झोला रखा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का इधर एक पार्सल रखा हुआ --

टेबल लगे हुई इधर खाने के पोस्टर टांगे हुए हैं इधर एक गेट हैं।

ये एक होटल है जिस होटल में बहुत सारे--

सामने एक भगवान की फोटो लगाई गई हैं जोकि साफ दिखाई नहीं दे र--

दो तीन ग्राहक भी हैं ये रात का टाइम है लाइटें भी लगी हुई और बहुत सारी कार --

खड़े भी है और इधर एक सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने की व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पै पैंट पहने हुए --

बहोत सारे लोग नहा रहें कुछ लोग बैठे भी हुए है इधर एक महिला भी खड़ी है।

येलो है जोकि देखने में एक दम तार सा दिखाई दे रहा है।

इटॉप का स्टैण्ड भी लगा हुआ है इधर एक ब्लैक कलर का खंभा भी--

यहां पे एकदम खाली जगह को दिखाया गया है जिधर कि एकदम साइड में एक--

हैं एक गाड़ी जा रही है रोड से और इधर एक--

यहां पे एकदम खाली जगह को दिखाया गया और ये शाम का टाइम है पेड़ पौधे भी--

कटोरी में खाना नहीं और टिशू पेपर भी इस प्लेट में डाला गया है।

यहां सेल्फी खिंचाने के लिए भी एक अच्छा जगह है।

है और इधर लिखा हुआ हैं गॉड वी--

गार्डन मे बहोत छोटे छोटे घास भी है जोकि एकदम गार्डन का रूप दे रही--

हैं और इधर एक बड़े बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं उसके साइड में रोड भी है।

जो कि अपने यूनिफॉर्म में है और इधर एक बड़े पेड़ की परछाई भी आ रही--